जैसा की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एक बांध दिखाई दे रहा है बांध का रंग काला है और बांध के ऊपर एक पुल भी बना हुआ है पुल --

सफेद पतित हो रहा हैं पास में एक दरवाजा भी हैं दरवाजा का रंग भूरा हैं।

बीच में कुछ पीला रंग का सोफा लगा हुआ है और एक स सादे रंग का टेबल भी लगा हुआ है।

कुछ कपड़ो का रंग साधा पतित हो रहा हैं बिच में एक इंसान भी बैठा हुआ हैं --

बस खड़ा हुआ हैं बस का सामने का रंग पीला हैं औ --

अंगूर के आस-पास सादा रंग का न्‍यूज पेपर लगाया हुआ है पास में एक और टोकरी है जिसका रंग लाल है।

पास ही में एक केले का विकास छे और सामने देखा जाए तो एक चर्च है चर्च का रंग सदा प्रतीत हो रहा है ।

इस पे कुछ पैकेट्स पे सी_टी_सी चाय कुछ पे नेसकैफै कॉफी या कुछ पे चाय काफी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है अंदर में लाइट जली हुई हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सामने एक कच्ची सड़क है उसके ऊपर एक जे_सी_बी का टुकड़ा पड़ा हुआ है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ यह एक दुकान का अंदर का दृशय है दुकान के अंदर एक फोटोकापी का मशीन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पेटियां--

सामने कुछ रंग बिरंगी लाइटस भी पड़ी हुई है पीछे कुछ ब्लू कलर रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर लाइट जली हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सामने रोड है रोड के ऊपर एक सादा रंग के की महिंद्रा की गाड़ी खड़ी हुई है आास-पास--

जैसा की मैं देख पा रहा हू ये एक रूम के अंदर का दृश्य है रूम की दीवालों का रंग लाल है।

आसपास बिल्डिंग के बहुत सारे लाइटस लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आई होप कुछ डंबल सर्वे भी पड़े हुए हैं।

उसके बगल में एक और दुकान है जिस पे इंक्रेडिबल थ्रेड्स लिखा हुआ है सामने की ओर एक टी_वी लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने सादे रंग का शर्ट काले रंग का पेंट और एक गमछा धारण किए हुए हैं --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ यह एक दवा की दुकान के बाहर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है बाहर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने सादा रंग का शर्ट पेहना हुआ है।

इस व्‍यक्ति ने काले रंग का टोपी एक चश्‍मा सादे रंग का टी_शर्ट और काले रंग का पेंट पहना हुआ दिखाई दे रहा है ।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ ये एक ट्रेन स्टेशन का प्लैटफॉर्म का पाथवे का दृश्य है पास--

सज्जा की गई है ऊपर की और पंखे लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आस-पास कुछ लाइट्स भी हैं ।